ऊपर उम ये आसमान दिख रहा है नीला अं सफेद नीचे छोटे छोटे पहड़िया है।

यहाँ पे ये एयर कूलर भी है टेबल भी है।

अं तीन चार कुर्सियाँ भी है एक आदमी खड़ा है फॅन लगे हुए है वहाँ--

कोई प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के रिगारडींग बहुत सारे बच्चे है ब्लू कलर के कपड़े पेहने हुए रंगबेरंगी कपड़े पेहने हुए भी है आधे--

अ एक लड़की साइड में खड़ी है ऐनक लगा के एक और माइक पे है पीछे एक-दो लेडीज भी हैं खड़ी टेट भी है साइड में।

और छोटे छोटे पौधे भी है बड़े भी--

मस्जिद लग रही है इसपे व्हाइट कलर का पेन्ट किया हुआ है और बाहर से इसके राउन्ड ग्रिल से बंद किया हुआ है।

अ कैफे है और यहाँ पे कैफे लिखा हुआ है कैफे हाइडआउट ।

तो ऊपर बॅनर ऊपर लगा हुआ है उसपे कप है।

लोगो तो नीचे छोटा सा गेट है साइड्स मे इनके प्लांट्स लगे हुए है और--

अं प्लांट्स लगे हुए है बड़े भी है छोटे भी है सब इस कलर के और आउटडोर पूरा ग्रीनरी --

ग्रीन कलर का कुछ लगा हुआ है डस्ट्बिन जैसा और आगे एक बहुत बड़ा दर--

पूरा डेकरैट किया हुआ रूम है तो वहाँ पे बहुत सारे है मतलब चेयर्स लगी ही एक दो चेयर्स पे बैठे है।

एक जेन्ट्स थ एक लेडीज है खड़े होके वहाँ पे एक--

अं जिसे वेट चेक करते है डंबल वगैरा वो सब है चेयर दिख रही है।

अं तो वहाँ पे लाइट्स है वॉल्स पे कलर है ऊपर भी लाइट्स है।

दो तीन चार पाँच आदमी दिख रहे है वहाँ से व्हाइट कलर का इसका बाहर कलर किया हुआ है।

अं ऐसा लग रहा है की रेस्टोरेंट है छोटा सा रेस्टोरेंट है क्योंकि डेकोरेशन लगा हुआ है नया नया खुला हुआ है।

ये रेड कल ऑरेंज कलर के और ग्रीन कलर के बलून लगे हुए है नीचे चेयर्स है उसपे बैठे है कुछ आदमी एक दो ब्लू कलर के शर्ट पहन--

और फिर आगे छोटे छोटे प्लांट है गाड़ियां है बड़ी गाडि छोटी गाड़ियां है।

और कुछ आदमी सब्जिया खरीद रहे है साइड मे वहाँ पे सबजिया भी बेच रहे है तो अ--

यहाँ बीच मे बीच पे कुछ औरते भी बैठी हुई है कुछ खड़े है।

अ कुछ बच्चे भी खड़े है वहाँ पे एक आदमी भी खडा है वहाँ पे पत्थर पे--

यहाँ पे एक रोड जैसा दिख रहा है साइड मे यहाँ पे एक यहाँ पे एक आदमी खड़ा है।